साड़ी पहन के यहाँ पास डांस कर रहे है और लड़के और लड़की लोग यहाँ पर डांस का आनंद उठा रहे हैं ।

और इसके चारो तरफ बड़े-बड़े घेरावे भी लगे गए है और बड़े-छोटे यहाँ पस गाड़िया भी--